सीढ़ियों के पास खंभे हैं जिसके ऊपर एक टीन शेड पड़ा हुआ है।

कुर्सियां पड़ी हुई हैं मेज पड़ी हुई हैं मेज पे सफेद रंग की चादर पड़ी हुई--

दीवाल पे लाल सफेद और नीले रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

ऊपर कुल्हड़ रखे हुये हैं। बहुत सारे बिस्किट रखे हुये हैं। पीछे दुकानें --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

इनमें पेन लगा हुआ है एक आदमी के गले में माला है।

दरवाजे लगे हुए खिड़कियां कांच की बनी ऊपर एक रेलिंग लगी हुई ऊपर एक सोल पैनल लगा हुआ है।

बहुत सारे कल्टीमीटर खड़े हुए है जिनके ऊपर बोवाई का बीज लगा हुआ है जो नीले रंग में है।